ये देखिए यहाँ पे ये क्लासेस लगी हुई है यहाँ पे ये कोचिंग क्लासेस लगी है यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंटस है जो कि यहाँ पे क्लासेस अटेंड करके रखी हुई है इन्होंने--

यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डेरी दिख रही है जो कि बालाजी डेरी है यहाँ पर केक --